अंदर काउंटर बना हुआ है बाहर एक बाइक खड़ी है।

और दरवाजे के बगल मे दीवाल में कुछ रखी हुई नजर आ रही है घर के दो पिलर हैं।

और घर के साइड में कुछ घास है और कुछ लत के पौधे है।

यह एक पार्क है जो कि काफी हर भरा है।

यह एक टोटो की दुकान है यहां पे दो टोटो खड़े हैं।

एक टेबल है जो साइड में है उनपे पर्दा डाला हुआ--

कुछ फूलों की माला है और आम की पत्तियां नजर आ रही है।

और सारे कुर्सी टेबल के नीचे रखे गए हैं।

दूसरे साइड में कुछ पत्थल छोटे छोटे है।

अंदर में बहोत सारा बलून लगा हुआ है सामने कुछ पेड़ लगा हुआ है।

यह एक मेडिकल शॉप है जहां पे तीन व्यक्ति दिख रहे हैं।

पीछे बहोत सारा पेड़ है जो काफी बड़ा बड़ा है।

पहा में गड्ढे दिख रहे हैं और पहाड़ में सफेद कुछ नजर आ रहा है और हरी झाड़ी भी है ।

एक कुर्सी के ऊपर में एक मशीन है जो काफी अजीब लग रही है।